सी_सी_टी_वी भी है वहां पे ये कुछ मीटिंग कर--

पेड़ भी बहुत सारे हैं वहां पे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा।

और वहां पर पेड़ भी है और दूसरी तरफ से मकान भी है जिसका कलर ग्रीन है।

जिनका रंग सफेद है और वहां पे ये बहुत सारी मूर्ति है।

और ऊपर एक बोर्ड है जिस पे लिखा है एफओआरडी ।

और घर है जहां पे बहोत सारे मुर्गियां रंग बिरंगे के हैं।

यहां पे इन्होंने बलूंस वगैरह बोहोत सारे वॉलपेपर्स अच्छे-अच्छे रखे हैं।

ये सब वगैरा भेज रहे हैं जूस फ्रिज है।

चिप्स वगैरा जूस बहुत सारे किस्म के है इस फ्रिज का नाम माजा है।

मिरर भी है जिसपे फोनपे का स्कैनर रखा गया--

इस अलमारी में बैडमिंटन और बॉल्स हैं।

वहाँ और वहां पर कोई भी आदमी नही पैदल नहीं चल रहा है।

और एक स्काई ब्लू ग्रीन पिंक कलर का एक गेट भी लग रहा है और पेड़ भी है वहां पे--

ये एक पिकनिक स्पॉट है जहां पर बहुत ही तेजी से पानी आ रहा है।

और इसके बीच में बड़े बड़े पत्थर भी है और वहां पर बादल भी छाए हुए हैं।

जिसमें ये दो डियर है। ये दो डियर चल रहे हैं।

जिसने व्हाइट कलर की शर्ट लगाई है और ग्रीन कलर का पैंट है।

वहां पे एक लड़का है जिसके शर्ट का कलर व्हाइट और पैंट का कलर ब्लैक है।

मकान के ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ है जो जिस पर रेड कलर से हिंदी में लिखा गया है।

ये एक स्कूल है जिसमें ये बच्चे कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं पेपर्स के।

ये तीनों ट्रैक्टर सेम है वहां इन तीनों ट्रैक्टर पर कोई भी इंसान नहीं है।

इन पर लिखा है न्यू हॉलैंड थ्री थाउजेंड थरटी सेवेन ।

उसकी छत का कलर ब्लू है और इसके साइड में मकान भी है।

ये एक पार्क है जिसमें ये छोटा सा एक झूला है।

एक बच्चा झूला पे खेल रहा है और वहां से एक लड़की है जो कि उसके ऊपर ही है।

इन्होंने व्हाइट कलर की तीन लोगों ने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है।

और साड़ियों के दुपट्टे अपने सिर पे हर एक ने रखे हैं।